हाँ भागलपुर का ही है जो अ अ पुलिया है।

कलर तो सिंपल ही कलर है। गोल्डन वाला जो है ऊपर में बना हुआ है वो अच्छा लग रहा है सुंदर लग रहा है। लाइट उट है। ये सब जो है सुंदर है बढ़िया है।